बहुत सारे बलून भी लगे हुए है एण्ड ली-ली नीले कलर की लाइटिंग भी जलती हुई दिखाई दे रही है आसपास कुछ कार भी खड़ी हुई है एण्ड कुछ लोग भी खड़े हुए है कुछ ट्रक भी दिखाई दे --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर कुछ कार दिखाई दे रही है एंड कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ बड़ी बिल्डिंग भी है।